यह एक पुराना स्थल है घूमने वाला स्थल है यहां पे बना हुआ है।

यहां पे पानी भरा हुआ है और एक नाव बड़ी सी नाव यहां पे है।

यहां पे कच्ची झोपड़ी जैसी है जो पहले बनते थे और कुछ सामने पक्के भी बने हुए हैं।

जिसमें लोग बैठ सकते हैं और यह मतलब बहुत ही बड़े हैं और सामने पानी ही पूरा पानी भरा हुआ।

और उसकी भी शोफ है जनरल स्टोर भी है दूसरी साइड ये बहुत बड़े शोफ है मॉल जैसी लग रही है।